इस पेट्रोल पंप के आगे दो ड्रम रखे हुए हैं।

दुकान के पिलर सफेद रंग के हैं।

ये चित्र एक बिल्डिंग का है।

इस मंदिर के पास सीढ़ियां भी दिख रही हैं।

ये चित्र एक नर्सरी का चित्र है।